नमस्कार इपिथॉन के द्वारा सिम्पल प्लॉट्स बनाने के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
हमें आशा है की आपके कम्प्यूटर पर इपिथॉन चल रहा है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न चीज़े सीखेंगे गणितीय फंक्शन का उपयोग करके सिंपल प्लॉट्स बनाना फिगर विंडो का उपयोग करके प्लॉट्स को बेहतर तरीके से समझना सबसे पहले हम इपिथॉन शुरू करते हैं
टर्मिनल ओपन करें और टाइप करें इपिथॉन हाइफेन पाइलैब और enter दबाएं
पाइलैब एक पायथन लाइब्ररी है जो हमें प्लोटिंग की सुविधा देती है
इसके अलावा यह हमें कई महत्वपूर्ण गणितीय एवं वैज्ञानिक फंक्शन्स की सुविधा देती है
शेल में इपिथॉन स्पेस हाइफेन पाइलैब कमांड चलाने के बाद आपको इपिथॉन और पाइलैब पर कुछ जानकारी दिखाई देगी
इसके बाद आपको In1 प्रॉम्प्ट दिखाई देगा
यदि आपको ERROR मैटप्लोटलिब कोल्ड नोट बीई imported
स्टार्टिंग नॉर्मल Ipython जैस कोई एरर दिखाई देता है
तो आपको मैटप्लोटलिब इनस्टॉल करना होगा और उसके बाद फिर से कमांड रन करना होगा
अब इपिथॉन शेल पर लिनस्पेस टाइप करें और फिर
टाइप करें
जैसा की डॉक्यूमेंटेशन मे बताया गया है कि यह प्रारंभ तथा अंत के बीच में समानांतर नुम सैंपल चिन्हित करता है
उदाहरण के लिए हम 100 पॉइंट्स प्लॉट करने का प्रयास करते हैं
टाइप करें लिनस्पेस ब्रैकेट में 1 कॉमा 100 कॉमा 100 और एंटर प्रेस करें
जैसा कि आप 1 से 100 तक नम्बरों का एक क्रम देख सकते हैं
अब हम 0 से 1 के बीच 200 पॉइंट्स बनाने का प्रयास करते हैं
इसके लिए हमें टाइप करना होगा लिनस्पेस ब्रैकेट में 0 कॉमा 1 कॉमा 200 यहाँ पर 0 शुरुआती तथा 1 आखरी और 200 पॉइंट्स की संख्या है
लिनस्पेस में शुरुआती और आखरी पॉइंट्स पूर्णांक दशमलव या कांस्टेंट्स कान्स्टन्ट हो सकते हैं
अब हम माइनस पी से पी के बीच में 100 पॉइंट्स चिन्हित करने का प्रयास करते हैं
यहाँ पी पाइलैब द्वारा परिभाषित कांस्टेंट कान्स्टन्ट है
इसे एक वेरिएबल प में सेव करें

यदि हम अब लेन ब्रैकेट में प टाइप करते हैं हमें पॉइंट्स की संख्या मिल जाएगी लेन फंक्शन हमें अनुक्रम में एलिमेंट्स एलिमेंट्स की संख्या देता हैं अब हम माइनस पी और पी के बीच एक कोसाइन कर्व प्लाट करने का प्रयास करते हैं
इसके लिए हम प्लॉट कमांड का उपयोग करते हैं
यहाँ कॉस हर अनुरूपी पॉइंट प पर हमें प की कोसाइन वेल्यू देगा

हम कॉस को कोसाइन वेरिएबल के लिए सेव कर सकते हैं और उसके बाद प्लॉट फंक्शन की मदद से प्लाट कर सकते हैं
प्लॉट को क्लीयर करने के लिए हम clf फंक्शन का उपयोग करते हैं

हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योकि यदि हम कोई नया प्लॉट बनाना चाहें तो पिछले प्लाट पर कोई असर न पड़े
चूँकि हम प्लॉट ओवरलैप से होने वाली किसी भी प्रकार की अव्यय्वस्था नहीं चाहते हम इसे clf से क्लिअर कर देते हैं
अब हम एक सिने प्लॉट बनाने का प्रयास करते हैं

प्लॉट विंडो में उपलब्ध विभिन्न विकल्प प्लाट को बेहतर रूप से समझने में हमारी सहायता करते हैं
आइए इन विकल्पो पर एक नज़र डालते हैं
जैसा की हम देख सकते हैं माउस पॉइंटर को प्लॉट के ऊपर चलाने से हमें प्रत्येक पॉइंट का स्थान पता चलता है
विंडो के निचले बाएँ ओर कुछ बटन्स हैं
इनमे से सबसे दायीं ओर का बटन फाइल सेव करने के लिए है
इस पर क्लिक करें और फाइल का नाम टाइप करें
हम इस फाइल को सिन अंडरस्कोर कर्व नाम से पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करते हैं
जैसा की आप देख सकते हैं हम फाइल फॉर्मेट ड्रापडाउन से निर्धारित कर सकते हैं
पंग ईपीएस पीडीएफ पीएस जैसे फॉर्मेट उपलब्ध हैं
सेव बटन के बाएँ ओर मार्जिन निर्धारित करने के लिए स्लाइडर बटन है
इसकी बाएँ ओर ज़ूम बटन है इस बटन से हम प्लॉट को ज़ूम कर के देख सकते हैं
जिस क्षेत्र को ज़ूम करना है केवल उस क्षेत्र को निर्दिष्ट करें
स्लाइडर बटन के बाएँ ओर बटन का उपयोग एक्सेस को मूव करने के लिए कीजिए
अगले दो बटन जिसपर बाएँ और दायें अरो आइकन हैं यह प्लाट की अवस्था को परिवर्तित करते हैं और उसे पहले की अवस्था में ले जाते हैं
यह ब्राउजर के बैक और फॉरवर्ड बटन जैसे ही काम करते हैं
अंतिम बटन होम है जो सबसे पहले प्लाट को लक्षित करता देता है
विडियो को यहाँ रोकें निम्न का अभ्यास कीजिये और फिर विडियो शुरू करें
प्लॉट बाय एक्स
पहला प्लॉट को सिन स्क्वेयर बाय xपीडीएफ नाम से पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करें
दूसरा ज़ूम कीजिये और मैक्सिमा ढूंढे
प्रारंभिक स्थिति में लाइए अब हम आज सीखी हुई चीजों को दोहराएंगे
इपिथॉन के साथ पाइलैब कैसे इस्तेमाल करें
लिनस्पेस फंक्शन का उपयोग करके नुम समानांतर पॉइंट्स को बनाना
लेन फंक्शन का उपयोग कर अनुक्रम की लम्बाई जानना
प्लॉट का उपयोग कर गणितीय फंक्शन्स प्लॉट करना
सीएलएफ का उपयोग कर ड्राइंग एरिया को क्लियर करना
यूआई की मदद से प्लॉट को बेहतर रूप से समझना और सेव ज़ूम का उपयोग करना और एक्स तथा य एक्सिस पर प्लॉट को मूव करना
माइनस पी बाय 2 और पी बाय 2 के बीच 100 समानांतर पॉइंट्स अंकित करना
दूसरा इपिथॉन में फिगर क्लिअर कैसे करें
तीसरा अनुक्रम की लम्बाई कैसे पता करें
और उत्तर हैं पहला हम लिनस्पेस ब्रैकेट में माइनस पी बाय 2 कॉमा पी बाय 2 कॉमा 100 कमांड का उपयोग माइनस पी बाय 2 और पी बाय 2 के बीच 100 समानांतर पॉइंट्स अंकित करने के लिए करते हैं
दूसरा हम सीएलएफ क्लोज़िंग ब्रैकेट फंक्शन का उपयोग फिगर क्लिअर करने के लिए करते हैं
तीसरा हम ब्रैकेट में sequence name फंक्शन का उपयोग अनुक्रम की लम्बाई जानने के लिए करते हैं
आशा करते हैं कि इस ट्यूटोरियल का आपने आनंद लिया और इसे लाभदायक समझा
धन्यवाद